एक दो बोर्ड --

बुक्स मिलती है कोन्टेक्ट नंबर दिए हुए है दो --

यह एक दुकान है यहाँ ये यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर लटके--

यहाँ पर एक हार लटका हुआ है जो --

पीछे एक इल्सार हार के खड़े है।

वहाँ पे बहुत सारी कार खडी है सी सेवेन --

वेंटीन सी सिक्स सी अ सी सिक्सटीन सिक्स --